ए टेबल के ऊपर और टेबल के अंदर रखे हुए और राइट साइड में एक चेयर है जिसका र अ कलर --

का बॉक्स भी है और ये पानी व्हाइट कलर के हैं और उसके राइट साइड में एक बड़ा सा फैन है।

ये वाटर फॉल की तरह दिख रहा है जो उसके बाजू में बहुत सारे लोग खड़े हैं और वाटर --